यहाँ पर खाना-पीना भी मिलते है।

एक कन्फेक्शन की दूकान है यहाँ पर बहुत सारे कुर्सियाँ लगे हैं यह दूकान में बहुत सारे --

काउंटर बनाये गए है यह काउंटर बहुत सारे शीशे लगे होंगे इसमें बहुत सारे सोना चाँदी के सामान बनाये गए है।

यह सड़क है। यह सड़क पर एक टोटो चल रही है। यह टोटो लाल कलर की है। यह टोटो तीन चक्के के है।